यह बिल्डिंग में आपको बताउगा की कितना अच्छा-सा बिल्ड़िग है यह पूर्णिया महिला महाविश्वविद्यालय पूर्णिया का ये कॉलेज है।

फोटो में देखिए कितना लम्बा बस है यह बस आर इ एल ए एक्स रिलैक्स वेल बक्स बस है।

जो उस साइड भी हम देख रहे है ये बस लगे हुए हैं और ये लम्बा सा फील्ड में अभी रुके हुए है ये बस ।

को ये नजारा कितना अच्छा मिल रहा है देखने को हमको यह दिख रहा है की चारों और से यह एक घांस पताल लगाए हुए हैं।

यह फोटो में हमको जो दिखाई पड़ रहा है यह एक लंबा सा मंदिर है जो एक मंदिर मस्जिद टाइप का मंदिर है जो लाल कलर के पेनट्स से पेन्ट किए हुए है।

यह पीपर का गाछी हेय जो पीपर के गाछी में ढेर सारी ठलियां है।

यह एक बाजार है बाजार के रोड है जो रोड के साइड मे ढेर ढेर अनेक प्रकार के दुकाने है जो देखने को आपको मिलता है ।

आप यह फोटो में देखिए यह पुल है एक फो यह एक लंबा सा लंबा सा एक पुल है।

जो पानी के नीचे से बीचे बीच होकर के ये बह रही है यह एक पानी से पानी के अंदर है।

पानी का बोतल लगे हुए हैं और कुछ लिखे हुए है बिल्कुल ।

और एक टेबल चेयर लगे हुए हैं जो देखने के लिए --